इस फोटो में मुझे अलमारियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े टेबिल और कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बस और कार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे आदमी दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे सूरज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा पोस्टर दिखाइए दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे कोड दिखाई दे रहे हैं।